मार्केट का फोटो देख रहा है जिसके अंदर बोहोत सारे गाछी पीछे क्च पंप जैसे पेट्रोल पंप जैसा दिखाई दी रहा है उस क ऊपर एक बैनर दिखाई दी रहा है पास में एक गेट बना हुआ है उस क ऊपर कुछ लिखा दिख रहा है एक साइड पर शॉप और दुकानें दिखाई दी राइ हैं और कुछ लोग पैदल चलती व्य दिखाई दी रही हैं।

एक शॉप का फोटो दिखाई दे रहा है जिस के अंदर पीछे भूख राखी दिखाई दे रही है कॉपी किताबें रखी है पिच्य पानी की बोतल रखी दिख रही है वेक्ति दिख रहा है जिसके गले में कुछ कागज की कोपीअ देखनी है इसमें एक चश्मा लगाया हुआ दिख रहा है और उसके हाथ में कुछ धागे वाघ्य दिख रहे हैं|

फोटो दिखाई दे रहा है जो सेल्फी लेते दिख रहा है उस क पीछे कांच दिखाई दे रहा है आस पास लोग दिखाई दे रहे हैं उसके गले के पीछे एक कपड़ा डला हुआ है ।

एक आदमी खड़ा है उसके पीछे सरिये नजर आ रहे हैं कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है शरीर से एक पाइप गुजरता हुआ नजर आ रहा है उनके सामने जो शख्स खड़ा है उसने सफेद टोपी और पेट पर बेल्ट पहन रखी है।

पीछे की तरफ कुछ बोरी बड़ी दिख रही हैं अंदर कुछ सामान बड़ा दिख रहा है और उस सामान के पीछे कुछ साड़ियां भी नजर आ रही हैं।

ऊपर आसमानी कलर क बैरन और पोस्टर दिख रहा है जिस में कुछ हिंदी और इंग्लिश में लिखा व दिख रहा है।

कार्यालय का फोटो दिख रहा है जिसके बाहर लोग भीड़ लगा के खड़े दिख रहे है सामने एक गेट दिख रहा है जिसके ऊपर कांच लगी दिख रही है गेट खुला दिखाई दे रहा है ऊपर एक बैनर लगा है पोस्टर लगा है उसके ऊपर हिंदी में कुछ लिखा दिख रहा है।

और पीछे कुछ बोर्ड लगा है जिसके अंदर नीले कुछ लिखा दिख रहा है जिसने गले में टाई पहन के रखी दिख रही है।